मुझे पुस्तकें पढ़ना काफी अच्छा लगता है और सभी को किताबें पढ़नी चाहिए क्यूंकि किताबें हमारे जीवन में हमारा अच्छा मार्गदर्शन करती --

यहाँ एक सड़क है सड़क के दोनों तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं जो की काफी अच्छी बात है क्यूंकि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और सड़क की एक तरफ हमें पंजाब नैशनल बैंक भी दिखाई दे रहा है।

जो लोग शाकारी हैं और मछलियाँ नहीं खाते हैं वो उसके बदले दाल का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है।

इस तस्वीर में बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देख कर लग रहा है कि वो संगीत या नृत्य सिख रहे।

और ये पीले फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये बिल्कुल गेंदे की फूल की तरह लग रहे हैं लेकिन ये गेंदें के फूल नहीं हैं पर बहुत सुंदर लग रहे हैं|

इस तस्वीर मे एक लड़का बहोत सारे गुब्बारों से बने हुए दिल के आगे खड़ा है ओर यै जो गुब्बारों से बना हुआ दिल है काफी अच्छा लग रहा है।

तस्‍वीर में दो लड़के जिम में है और जिम कर रहे हैं कुछ लोग और ये दो लड़के अपनी तस्‍वीर खिचवां रहे हैं।